दिवार है जिस पर व्हाइट कलर से पुती है और दरवाजा दिख रहा है।

पेड़ लगे हुए है| पीछे ग्राउन्ड दिख रहा है जिसमे बहुत सारी ग्रीन कलर की घास लगी हुई है।

इसमें एक दरगाह दिखाई दे रही है | यहाँ पर चादर चढ़ाई हुई है ग्रीन कलर की और --

यहा पे एक टोयोटा शोरूम जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है।

उस बिल्डिंग पर टोयोटा लिखा हुआ है| और बाजू से कुछ ए_टी_एम जैसा दिखाई पड़ रहा है।

और यह फर्नीचर लगा हुआ है लाइटिंग दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक तीन मंजिला बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो ब्लू कलर से प्रिंट है।

एमसी लगी हुई हैं जहा से लाइट का कंटरों किया जाता हैं| एक --

कोई टेबल लगा हुआ हैं| ब्लू कलर की चेयर हैं और दो दरवाजे दिखाई पद रहे हैं।

शोरूम में लाइटिंग लगी हुई है कलर कलर के शूज रखे हुए हैं |

यहाँ पे एक बेहता हुआ पानी दिखाई दे रहा है जैसे की कोई नदी हो।